यह एक पेट्रोल पंप है यहां पर गाड़ी है और झाड़ा भी हैं यहां पे और यहां एच_पी बोल के लिखे हुआ है कु--

घरा है यहां पे घर है यहां पे बिल्डिंगा है आ नीचे घास है।

ये कोई यहां पे कोई मूर्ति है शायद यहां पर और ये --

दो घोड़े हैं यहां पे और लोगां है बहोत सारे सजावट करी हुई है ये गाड़ी की सजावट की है ये।

और झाड़ा है यहां पर लोग हैं यहां पे पूरे कलर वगैरा डाले लोगा फूलो से सजेवा है ये--

यहां पे काम चल रहा घर का ये लोग घर बना रहे हैं यहां पर घर का काम चर रा और यहां कुर्सियां भी रखे हुए हैं।

और यहां फैनां भी है लगे हुए यह थैले वगैरह है यहां पे लोगों के कपड़े भी हैं।

और झाड़ा भी है यहां पे बहुत स बड़े-बड़े झाड़ा भी है यहां पर।

ए_सी भी है यहां पर ये एक बैंक ये यहां पे भी कोई बैठे हुए हैं राइट साइड भी।

ये जिंगे जिंगे ए --

और यहां पे वो दीवार पे भी खिस चिप चिपकेवा जो उतरेवा चिपकीया चिपकाए से दीवार पे भी एस_डी_एम_एम_आर --

ये देखिए पराठा आलू पराठा है शायद ये।

यहां एक सड़क पे एक आदमी खड़े हुआ है और ये एक बस है काले कलर की बस है पीछे झाड़ा भी है यहां पर।

और यहां पे बस के ऊपर लिखे हुआ है बंदीपुर टाइगर।

और यहां कुछ घर के जैसा बनेवा है बहोत सारे बड़े बड़े झाड़ है नीचे पूरी ग्राउंड में घास है और यहां मेनॉल हैं--

यहां देखिए पानी है पूरा यहां पर और यहां नीचे कुछ मशीन है पानी में।

ये देखिए यहां पे पूरे फुगोंन से सजे हुआ है।

ऊपर लाइट लगे हुई ए_सी है नीचे भी फुग्गे है और यहां पलंग या सोफा है रखे हुआ यहां पर।

और ये बीच में लाल कार्पेट बिछे हुए परेट हो रही शायद यहां पर।

चार जने है डांस की प्रैक्टिस कर रहे अनिमे देखके डांस की प्रैक्टिस कर रहे ये लोग को और फैन लगे हुआ है।

यहां कुछ दावत हो रही जैसा दिख रहा पूरे सेम कलर के कपड़े पहने हुए लाल कलर के कुर्ते पहने हुए पूरे--

अम फूलों से सजे फूलों की माला है वहां पे लोगां हैं यहां पे भी लोग हैं बैठे हुए सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के ये --

और देखिए लोगां इधर सामने से आ रहे हैं यहां पे फैना भी लगे हुए हैं ऊपर लाल कलर के अ झुमरा लगे हुए हैं।

ये एक शोरूम दिख रहा और यह देखिए डी मार्ट के जैसा कुछ दिख रहा है शोरूम ये।

यहां पे देखिए वीवो बोल के लिखा हुआ है यहां पर--

ये कांच का टेबुल है ये पूरा वहां लाईट्स लगी हुई है पूरी और डब्बों में फोना हेड फोना सब है ये विवो के--

और यहां पे बाहर बहुत लोगां बैठे हुए हैं सड़क है बड़ी सड़क है ये लोगां बैठे हुए हैं काम नहीं है कुछ भी लोगों को।

ये देखिए बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी पार्क है ये।

एक दो तीन रैक टायर या बाजू में भी है टायर रखे हुए।